और एक गाड़ी गुजर रही है एक पेट्रोल पंप की ओर बढ़ रहा है।

चश्मा व सफेद कलर की टी शर्ट पहन रखा है लड़के के पास में एक नदी है।

एक बजर कर रहे हैं पास में मिट्टी का देर रखा हुआ है।

पुलिया के नीचे एक चौड़ी रोड दिखाई दे रही है रोड पे एक टेंपो है।

झींगा है दो सफेद व हल्के ब्राउन रंग के दिखाई दे रहे हैं।

झींगा विटामिन ए के लिए लाभदायक होते हैं शरीर में--